फादर खड़े हैं एक आदमी खड़ा है उनके साथ।

एक एक्टिवा भी खड़ी है कुछ गमले लगे हैं।

बल्कि धूप सी है शाय़द सुबह का वक्त है।

वो सुबह का वक्त हो रहा है काफी पेड़ सा बहुत सारे पेड़ भी हैं।

यहां बड़ी-बड़ी कैंस में कुछलिक्विड रखा है स्टैम रखे हैं।

यहां स्टेशनरी का कुछ सामान मिलता है चौक से डस्टर है बहुत सारी कैन भी दिख रही हैं।

काफी पुराना मंदिर लग रहा है आगे पीछे बहुत सारे पेड़ हैं।

ये लेकिन ये कार्यालय ऑफिस है।

आसमान दिख रहा है शाम का वक्त है।

कुछ पेड़ दिख रहे हैंछोटे-छोटे जिसमें फूल खिले हैंवाइट कलर के--

टाइल्स पे टाइल्स लगे हुए हैं जोकि पुराने पत्थर जैसी है।

सिविल इग्ज़ीइंजीनियरिंग की एक रो अलग है।

पेड़ पर कलई की गई है एक दीवार है जिस पर वाइट और रेड पेंट किया गया है।

ये एक मंदिर लग रहा है मंदिर के द्वार को काफी खूबसूरत तरीके से--

एक हरी कलर की नेट है जो सर पे बंदी है।

ये एक गार्डन जैसा दिख रहा है।

एक जाली सी दिख रही है जिसका कलर ब्लैक है।

पीछे एक फ्रिज है फैन है कुछ बोतल्स भी हैं।

एक लेडी दिखाई दे रही है जो सड़क जो चल रही हैं।